गार्डन मे हम देख पा रहे है छोटे-छोटे से गमले है उनमें कुछ पौधे लगाये गये हैं और यहां पे बड़े-बड़े पेड़ भी हम देख पा रहे काफी साफ-सुधरी जगह है।

बोन काफी बड़ा सारा है और यहाँ बाहर इसके कुछ कच्चा पक्का सा है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे मेन गेट मेन गेट आप देख सकते हैं काफी पुराने टाइप का लग रहा है सीढ़ियां यहां दिख रही हैं।

झील मे आप देख सकते है काफी पानी भरा हुआ है आस पास कुछ पत्थर है तो आस पास कोई घास पेड़ पौधे उगे हुए है देख पा रहे है यहां --

जैसा की हम देख पा रहे है यहां पे एक मेला लगा हुआ है मेले मे आप देख सकते हैं तरह तरह के झूले हैं।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे एक बहोत बड़ा घर बना हुआ है घर आप देख सकते हैं बहोत ही प्यार और बहोत ही सुंदर है।

वे कन्याएं दिख रही है हमे जोकि आप देख सकते है साड़ी पहन के नृत्य कर रही है सब अलग अलग प्रस्तुति दे रही है खुद देख सकते है आप --

यहां हम देख पा रहे हमें यहां पे--

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी फैसिलिटी की गई है।

लिखा हुआ है आप खुद देख सकते हैं ये एक आइसक्रीम पार्लर है यहां पे तरह तरह की आइसक्रीम मिलती है काफी अच्छी वैरायटी है आइसक्रीम की यहां।

यहां हम देख पा रहे है यहां पे सामने घर बने हुए हैं घर के बाहर हम देख पा रहे है यहां पे काफी सारे लड़के खड़े है।

यहां पे शादी हुई थी और यहां कुछ टेंट लगे हैं स्टेज हम देख पा रे हैं स्टेज पे कुर्सी है और नीचे दो स्कूटी खड़ी --

यहां हम देख पा रहे हैं एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग आप देख सकते हैं इसका नाम है हॉस्पिटल ये यहां पे निम्स और यहां कुछ --

यहां हम देख सकते हैं यहां पे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

उसके पीछे एक बहहोत बड़ा पेड़ है मैन रोड हम देख पा रे हैं दो भईया जा रहे हैं एक बड़ा सारा ट्रक हमें दिखाई दे रहा --